हमें इस फोटो में एक--

बहुत सारे पेड़ लगे हुए है।

बाहर साइड बहोत सारी लाइट लगी हुई है।

लाइट वाला पिलर भी खड़ा हुआ है।

हमें इस फोटो में बस इस्टैंड का दृश्य दिखाया गया है यहां पे बहुत सारे घर बने हुए हैं।

सफेद कलर के गमले भी रखे हुए हैं।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

कुछ लोग डांस कर रहे है।

पीछे के साइड घर दिख रहा है।

एक कार कुछ बाइक खड़ी हुई हैं।

यहां पे बहुत सारी बस खड़ी हुई हैं।

बहुत सारे घर दिख रहे हैं।

रोड भी नजर आ रही है।